वो माइक में कुछ बोल रही है या कोई सॉन्ग गा रही है।

सभी बच्चे अपनी-अपनी मॉडल्स बना रहे हैं।

यहां पर हमें और भी समान नजर आ रहा हैं।

यहां पर हमें दो आदमी भी नजर आ रहे हैं।

देखने पर हमें यहां पर कोई पार्क नजर आ रहा है।

है ये खाने में बहुत ही स्वाद होते हैं।

इस पिक्चर में हमें एक मंदिर नजर आ रा है।

इस पिक्चर में हमें बहुत सारे गमले दिखाई दे रहें हैं।

खेत भी नजर आ रहे हैं।

ए_टी_एम दिखाएं दे रहा है यहां पर हमें--

यहां पर हमें एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

देखने में हमें ये कोई हॉस्टल लग रहा है।

देखने मे लग रहा है ये बच्चियाँ कोई परफॉर्मेंस कर रही है।

यहां पर हमें बहोत सारे पेड़ नजर आ रए हैं।

इस पिक्चर में हमें एक ट्राली नजर--

यहां पर हमें भगवती ज्वेलर्स लिखा हुआ--